अ कुर्सी है अ टेबल पर कुछ सामान रखा हुआ है।

इस पिक्चर में दो लोग हैं एक गुफा के अंदर जा रहा है और एक बाहर--

एक रेड कलर का टीशर्ट पहना हुआ है नीचे जींस है और एक लड़का मोबाइल से पिक्चर बना रहा है ये सुरंग टाइप का है।